और बैठने वाली चीजे भी बे पड़ी है ला रहे और छोटी मोटी घास भी उग रही है ये भी उग रहा --

यहां पे मुझे बहोत सोनार की दुकान दिखाई दे रही है इसमें बहोत चांदी की चीजे पड़ी हुई है।

और बेड भी दिखाई दे रहे है और मुझे सोफे भी दिखाई दे रही है एक बहुत बड़ा कमरा भी दिखाई दे रहा है।

लाइब्रेरी है और ए_सी भी लगी हुई है दोनों साइड और भी लगाई हुई है।

यहां पे मुझे बहुत सारी स्कूटर्स नजर आ रही है एक राकेश होंडा की बाइक भी नजर आ रही --

यहां पे मुझे एक बहुत बड़ा मैदान नजर आ रहा है मैदान में एक कुर्सी नजर आ रही--

कचरे निकालने वाली झाडू वाली मशीनें भी दिखाई दे--

और मुझे यहां पे एक पिलर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है वो अपने स्कूटर का हैंडल पकड़े हुए दिखाई दे रहा --

और कपड़े भी टंगे हुए हैं बहुत ही शानदार कपड़े टंगे हुए हैं।

यहां पे छोटी छोटी घास उग रही है और एक बड़े बड़े भी हैं और नीचे हरी भरी घास है और सामने बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

वह साइड में आई लव नाम लिखा हुआ है और नीचे महात्मा गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है।

यहां पे एक दही की बाट की रखी है कान्हा की बाट की रखी है दो तीन चाकूड़े रखे हैं और बलून भी रखा हुआ है टमाटर भी रखे हुए हैं।

और सभी आदमियों के सर पे हेलमेट पैरा हुआ है और सभी आदमी ने टी शर्ट पहन रखी है।

इस गाड़ी को शंका से बंधा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक यह एक कपड़ों की दुकान है इसमें बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं और यहां पे ऊपर की तरफ बहुत मजे आ रहे हैं।